गाड़ी के साथ ही दो मोटर साइकिल है जिसमें दो व्यक्ति पीछे बैठे हैं और कुछ चला रहे हैं |

जोकि भगवान की पूजा-पाठ में लीन होकर हाथ जोड़े हुए हैं।

यह एक पवित्र सरोवर का चित्र है।

एक कछुआ लकड़ी के पटरी के ऊपर बैठा है और दो बगल में बैठे हुए हैं ।

कुछ लोग इसके भीतर जा रहे हैं।

यह एक सफ़ेद रंग कि ईमारत की चित्र है जो की दो मंजिले हैं ।